दाएं और बाएं तरफ दरख़्त हैं जिनके पत्ते सब्ज हैं आसमान नीला है बिल्कुल साफ है।

किसी भी स्कूल मैं आर्ट के हवाले से काम सरंजाम दिया --

बस स्टॉप का मंजर है जहां पर नीले रंग का एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर एक गाड़ी खड़ी है जिसका।

ब्लैक रंग की पैंट पहनी हुई है काले रंग की एक ने ब्लू रंग का पहना हुआ है लोग यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए आते हैं।

एक सड़क है जिस पर एक आदमी साइकिल पर जा रहा है जिसमें नीले रंग कि शर्ट --

एक गाड़ी है जिसके ऊपर जिसके ऊपर सफ़ेद रंग से डिस्कवरी लिखा हुआ है ।

खाली प्लॉट है कंस्ट्रक्शन के लिए के लिए सात ईंटें रखी हुई हैं चार।

दो दरख्त नजर आ रहे हैं सब्ज रंग के आसमान सफेद है।

सफ़ेद रंग से धारी लगाई हुई है पीछे अ सब्ज रंग के रत्न नज़र आ रहे है।

साथ ही साथ इनका फोन नंबर लिखा हुआ है फोन नंबर जो है वह सफेद रंग के है जबकि पटियाला जो है।

यूनिटी एक उसके ऊपर लिखा हुआ है सफ़ेद कलर से झंडिया भी लगी हुई है साथ।

स्टार बाजीगर के पंपलेट लगे हुए हैं साथ ही एक दुकान है जिसमें पीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है एक और जिसपे आपने नीले।

इसमें दो आदमी मौजू तीन आदमी मौजूद है टोटल एक आदमी मोबाइल से सेल्फी बना रहा है जिसमें।

पीछे एक आदमी मौजूद है जिसने नील रंग की।

यहाँ टोकरिया पड़ी हुई है एक टोकरी का रंग सुरक है जो खा।

सेब और किस्म के फल सजे हुए हैं ये एक रैली का मंज़र हैं।

केक काटने का ये मंज़र है जिसमें नीले और पीले रंग की पत्तियाँ ।

नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है एक बच्ची है जिसने सफ़ेद रंग की पहनी हुई है एक खातून जिसने रंग की साड़ी पहनी हुई है।